और एस_बी_आई ए_टी_एम के सामने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट --

यह एक बेडरूम है जिसमें एक अलमारी है और एक अअ बेड है।

जिसमें पाच लोग योगा कर रहे है और--

दो लोग से बात कर रहे हैं।

यह एक स्टेडियम है जिसमें इंसान वॉक भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं कुछ इंसान क्रिकेट भी खेल रहे हैं।

और यह बहुत बड़ा स्टेडियम हैं उसके आसपास बहुत सारे--

अंदर बहुत सारे ऑरेंज कलर की जलेबियां हैं।

यहां एक एस_बी_आई ए_टी_एम है जिसमें से एक इंसान पैसे निकाल रहा है और--

और दीवाल में दो ए_सी भी लगीं हुई है।

मूर्ति रखा हुआ है जिसमें शंकर भगवान--

यह एक जिम है जिसमें एक इंसान कसरत कर रहा है बंडल उठा रहा है।

बहोत सारे मुस्लिम लोग यहां नमाज पढ़ रहे हैं सर में--

ऊपर छत में दो पंखे लगे हुए है।

और खिड़कियां लगी हुई है दीवाल तरफ।

टंगे हुए हैं कुर्ती सलवार सूट --

और पेड़ भी लगे हुए हैं गार्डन के पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

उसके बाजू में एक और दुकान है।

यह एक जू गार्डन है जिसमें बहोत सारी हिरण हैं और आस पास पेड़े लगे हुए हैं।

ऊपर कांच खिड़की का लगा हुआ है यह एक --

यहां एक बहुत बड़ा डैम है डैम के थोड़ा दूर--